इस फोटो को देखकर एक आम रास्ता दिखाई दे रहा है। यहां सीड़ी बनी हुइ है। और एक बिल्डिंग का ऊपर ए.टी.एम. का का फ्लैक्स लगा है। और नीचे ए.टी.एम. कार्ड मशीन रखी हुइ है।

फोटो में एक मेदान नजर आ रहा है। उसके सामने बिल्डिं का कन्स्ट्रक्शन्स चल रहा है। ऊपर सरियस वगेरा दिखाई दे रहा है इधर कूड़ा दिखाई दे रहा--

है और आस पास पूरा खुला हुआ मैदान दिखाई दे रहा है।

आस पास पेड़ पौधे है और बीच में सुखा दिखाई दे रहा है आसपास बहुत से पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है इसमें लोहे का गेट भी दिखाई दे रहा है।

एक करोड़ दिखा रहा है आसपास पेड़ पौधे है और बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है।

आसपास दिखाई दे रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और आपको नीला दिखाई दे रहा है।